एक मेरे को प्लेटफॉर्म सा दिखाई दे रहा है जो प्लेटफार्म का ब्रेकरूम होता है वहाँ यात्री ठेहरे हुए है कुछ ब्रेंचों पे बैठे है।

यहा एक दादाजी खड़े हुए है जो सफ़ेद कपड़े भी हुए है और हाफ चड्डा भी पहने काली चप्पले भी पहने--

फ़ूलो की माला भी दिख रही है पर्दे लगे हुए है एक आदमी टे मंच के नीचे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा चप्पल भी नीचे दिखाई दे रही हैं।

आगे मकान भी दिख रहे हम और पेड़ वृक्ष भी दिख रहे है जो हेलमेट लगाए बैग टांगे हुए आदमी आ रहे है।

कैमरे भी चल रहे है एक छोटा छोटू दूल्हे टाइप की टोपी लगाए हुए दूल्हे की साइड देख रहा है।

यहाँ एक सुपरहिट मकान बना हुआ हैजो अच्छी आलिशान दिख रहा है जिसके सारे मकान में बल्ब भी उजर रहे है उसके सामने बहोत आदमी दिखाई दे रहे है।

और ये गामरू सेव की दुकान लग रही है बीते किराने की दुकान लगी हुई है अंदर फ्रिज भी रखा हुआ है मशीने भी रखी हुई है।